बजा हुआ है और छत बहुत अच्छे से कवर की जा रही है।

जिनमें कुछ फूल लगे हुए हैं और कुछ और कई प्रकार के--

यह जो तस्वीर आपको सामने दिखाई दे रही है यह सब्जी मंडी की एक तस्वीर हैं।

और उसको उत्पादन करते हैं ये एक अच्छा बिजनेस व्यापार है ये हमारे सेहत के लिए अच्छा और करत है।

शादी में कई प्रकार की तस्वीरें को खींच रहा है।

ये बहोत सुंदर दृश्य दर्शाता है।